इ है केकेएम कॉलेज के नजरा यहाँ ग्लेम्ब्र लगल है एम्बुलेंस लगल है।

ये है बीर शिवाजी बहुत थे बहुत बड़ा महान आदमी महान थेये --